यह एक बॉडी बिल्डर की तस्वीर है जिनमे उन्हे कसरत करता हुआ दिखाई दे रहा है ये जिम का प्लेस है यहां पे एक बोर्ड लगी हुई एक भाड़ी सा --

इस फोटो मे बहुत सारे किताब रखी हुई है इनमे से एक किताब ये आदमी उठाकर दिखा रहे है ये इस आदमी ने चश्मा पहना हुआ है इसके हाथ मे --

इनके चारो और धुआं ही धुआं दिख रहा है। इसके एक तरफ एक गेट बड़ा-सा गेट दिखाई दे रहा है।

यह एक शादी की तस्वीर है जिसमे बहुत सारे आदमी को इनवाइट किया गया है। यह तस्वीर में एक स्टेज बनाया गया है जो लाइट कड__ कलड में है उनमें बहुत सारी लाइटें जल रही ---